सेंट्रिंग किया तो है अरे लोग रोड बाँध रहें हैं ढलैया चल रहा है।

और आसमान दिख रहा है जो की ब्लू कलर का है।

और बहुत सारे ढ़ेर सारे पेड़-पौधे है और जो ये पहाड़ भी दिख रहे है ।

यहाँ पे ढ़ेर सारे मुर्गे है।

एक सड़क दिख रहा है सड़क पे जो है लम्बे लम्बे बाँस में कुछ कपड़े बांधे हुए हैं।

बहुत सारे पंखे भी लगाए हुए हैं जिम वाले पोस्टर सटे हुए हैं नीचे में टाइल्स है ।

एक बड़ा सा पार्क नज़र आ रहा है और उसमें एक पीछे में बहोत बड़ा--

पोल जैसा टॉवर जैसा दिख रहा है।

बहुत सारे ल लम्बे लम्बे पेड़ भी हैं जो की हरे कलर के हैं।

और एक बड़ा सा घर है।